अच्छा मन्दिर है घर है पूजा पाठ कर रहे है पंखा लगा हुआ है लाईट बत्ती है अच्छा दिख रहा है।

हा छईया चेहरा भी है लाइट बाती भी लगा हुआ है घर मकान भी अच्छा दिख रहा है एक नंबर का है लेन-देन बढ़ियन से होता है।

ग्राउंड भी बहुत अछा हैं दिख रहा है मकान भी बहुत सुंदर दिख रहा है बगल में है पेट्रोल टंकी --

यहाँ पैसा बढ़िया से देते हैं पंजाब नेशनल बैंक हैं।

देखने में भी अच्छा दिख रहा है कुर्सी टेबल सब लगा हुआ है इसमें और बहुत अच्छा दिख --

पक्का का मकान है बहुत अच्छा लग रहा है बहुत सुन्दर है बहुत अच्छा सजाये है बहुत अच्छा लग रहा है दिखने मे भी बहुत सुन्दर है।

खाने - पीने के लिए कुर्सी टेबल भी ब -बहुत अच्छा लगा हुआ है बहुत अच्छा है पानी प - पीने के लिए भूत देते हैं बहुत सुंदर है।

टॉकीज भी बहुत अच्छा दिखाते है लाईट बत्ती भी एकदम झमाझम है देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है टाकीज।